इस तस्वीर में हमें एक काला सा गेट दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें बहोत सारे बक्से दिख रहे हैं।

इस दिखाए गए तस्वीर में हमें बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें बहोत सारे विंडो दिख रही है।

इस तस्वीर में हमें एक आदमी दिख रहा है।

इस दिखाए गए तस्वीर में हमें एक इमारत दिखाई गई है।

इस दिखाए गए तस्वीर में हमें मुर्गा घर दिखाया गया है।

इस फोटो में हमें बहोत लंबे लंबे पिंजरे दिख रहे हैं।

इस दिखाए गए तस्वीर में हमें एक लाल कलर का बड़ा सा इमारत दिखाया गया है।

इस फोटो में हमें बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें दो सफेद पर्दे दिख रहे हैं।

इस फोटो में हमें बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

छवि में हमें दो तीन बड़े बड़े घर दिख रहे हैं।

इस फोटो में हमें पानी दिख रहा है।

इस छवि में हमें काला कलर का फ्लोर दिख रहा है।

इस फोटो में हमें चार पांच लाइट बल्ब दिख रहे हैं।